यह एक अं कोई शाप लग रही है। कंप्यूटर बनाने की दुकान ए ।

और इसी मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा हैं जोकि एक व्यक्ति एक के ऊपर खड़े होकर म्-मटकी तक पहोंचने का प्रयास तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मंदिर दिख रही है जोकि श्री कल्याणी देवी मंदिर --

और ये सर्विस कर रहे और नीचे इसका टायर खुला हुआ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सिर पर पगड़ी बांधे और सामने की तरफ त तराजू रखा हुआ --

और इ-रिक्शा मे सफारी लिखा हुआ दिखाई दे रहा --